और वाहन भी खड़ी हुई है।

छत के चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं।

बच्चो के सामने एक बेंच रखी हुई है।

सामने दो गधे खड़े हुए हैं।

सामने बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं।

हरा कलर का मैट है।

जहाँ पे पीला कलर और काला कलर पता हुआ है।